यह तस्वीर हमें एक खेत की नजर आ रही है।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

एक मंदिर की नजर आ रही है।

यहां पर छोटे छोटे पेड़ पौधे बहोत ही सुंदर लग--

यह तस्वीर हमें एक पार्क की नजर आ रही है।

यह तस्वीर अह में एक कंप्यूटर रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर हमें एक सलून की नजर आ रहीं हैं यहाँ पर एक लड़की तस्वीर खीच--

इस तस्वीर में हमें एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमें एक रेलगाड़ी भी दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक कैफे की हैं यहां पर बहोत सारी कुर्सियां और मेज रखी हुईं हैं।

यह तस्वीर हमें बाबा भूषण शाह जी चौक की दिखाई दे--

येह तस्वीर एक स्कूल की नजर आ रही है यहां पर बहुत सारे बच्चे बाहर खड़े हुए दिखा--

यहां पर बहोत सारे बच्चे योगा के आसन करते हुए दिखाई दे रहें हैं।

पर बहुत सारी लड़कियां योगा करती हुई दिखाई दे रही है इन लड़कियों को एक लड़की योगा सीखा रही है।

यह तस्वीर एक मैरिज पैलेस की है।

इस तस्वीर में हमें एक टेलर की दुकान दिखाई दे रही है।

टेलर की दुकान को गुब्बारों से सजाया हुआ है।

टेलर की दुकान के बाहर एक टेंट भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है इस तस--

मेज पर सॉस के डिब्बा भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

गुरुद्वारा में एक नीम का पेड़ भी लगा हुआ है इस तस--

येह तस्वीर एक कैफे की है कैफे में बैठने के लिए बहुत सारे सोफे ल--

वो सुंदर सुंदर लाइट भी नजर आ रही है।